यहाँ पे एक लाल चटाई भी बिछी हुई है।

लाल रंग में हैं नदी के पास बहुत सारे हरे - भरे पेड़ भी है।

जिसके ऊपर कुछ बाइकें चल रही है यहाँ पे--

खेत के बगल में एक बड़ा सा मैदान भी है जो कि भूरे रंग में है।

तीन बड़े बड़ी झंडे लगे हुए है जिनका रंग नीला पीला लाल और हरा है।

जिसके ऊपर एक नीले रंग तौलिया भी टंगी हुई है।

डिब्बा रखा हुआ है यहाँ कुछ आदमी खड़े हुए है और कुछ आदमी सायकल चला रहे है।

यहाँ पे एक प्लेट में बहोत सारी जलेबिया रखी हुई है।

जिनमें से तीन बच्चो ने खाकी वर्दी पहनी हुई है और एक ने हाथ में झंडा लिया हुआ है।

और एक लड़की ने गुलाबी रंग का कपड़ा पहना हुआ है दुकान के सामने सीढी बनी हुई है।

भर के रखे हुए है यहाँ पानी की बोटल भी रखी हुई है।

इनमें से दो का रंग काला और एक का रंग नीला है यहाँ दो लडके भी खड़े हुए है।

यहाँ पे एक बहोत बड़ी सी फैक्ट्री है जिसके ऊपर बहोत सारी पाइपे गयी हुयी है।

वॉटर पार्क के अंदर बहुत सारे झूले और पेड़ लगे हुए हैं इसमें से पेड़ का रंग हरा है।

मैट बिल रखा हुआ है यहाँ पे बहुत सारे बर्तन भी रखे हुए है यहाँ एक--

यहाँ पे पुतलों का रंग सफेद है यहाँ पे बहुत सारी लाइटें भी लगी हुई है दुकान के पास एक लाल रंग की--